और सड़क पर सूखी हुई पत्तियां पड़ीं हुईं हैं।

इसमें पीछे लाइट का एक खंबा लगा हुआ है।

ये त-तस्वीर एक दरगाह की है इस दरगाह का अ-रंग सफेद फरोजी और हरा है।

ये तस्वीर एक स्टेशन की है इस तस्वीर में पटरिये दिख रही हैं पटरी पर ट्रेन जा रही है।

एक आदमी चल रहा है जिसने ऑरेंज रंग की टी-शर्ट पहनी है।

यह तस्वीर ढलते हुए सूरज की है इस तस्वीर मे के लोग बैठे हुए हैं।

जिसका रंग गुलाबी और पीला है इस पर एक खंभा है जिसका रंग सफेद है।